ज़्वलती हुई देखी जा रही है ऊपर कुछ ऐ.सी. भी लगाई गई है नीचे ब्लू कलर की दीवालो पे पेंट किया गया है और सामने एक बड़ा सा उब डेस्क जैसा कुछ दिखाई दे रहा हे जिसपे--

यहां पर एक सीधी रोड जाती हुई दिखाई दे रही है। अगल-बगल में बहुत सारी हरी-हरी घासें दिखाई दे रही है। और कुछ स्थानों पर बड़े-बड़े चट्टानें भी देखी जा सकती है।

नीचे भी कुछ लोगों को देखा जा सकता है अगल-बगल में टायर का बहुत सारा चक्कर निकला हुआ है नीचे कच्ची भूमि दिखाई दे रही है ऊपर से रोशनी आई हुई साफ देखी जा सकती है ऊपर चढ़ने के लिए कुछ गाड़ियां--

व्यक्ति भैंसों का दूध निकल रहा है वह स्टील की बाल्टी लिए हुए हैं सामने कुछ नाथ जैसा बनाया गया है जिसमें भेंसे खाना खाती हुई दिखाई दे रही है व्यक्ति से सफेद रंग की शर्ट --

यह एक रेस्टुरेंट के अंदर का इमेज है जहाँ पर बहुत सारे डेस्क टेबल एक साथ लगाये गये हैं सामने एक बड़ा सा डेस्क रखा गया है जिसके उपर बहुत सारी बौटले रखी गई है।

अगल बगल में बहुत सारे बहुत सारे लोगों को देखा जा रहा है ऊपर सफेद रंग की लाइट लगी हुई है नीचे बहुत अच्छी डिजाइन के तालीस लगाए गए हैं ऊपर उतरने चढ़ने के लिए सीढ़ियां बनाई गई --